c ++ में constructors constructors और destructors destructors के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
constructorsकंस्ट्रक्टर्स
कंस्ट्रक्टर्स के प्रकार
destructors डिस्ट्रक्टर्स
हम कुछ उदाहरणों की मदद से यह करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu operating system version 1110
g ++ compiler version 461
अब constructors के परिचय के साथ शुरू करते हैं
constructor एक member function है
इसका name class name के जैसा ही है
constructors values return नहीं कर सकते
जब object बनता है तो यह अपने आप कॉल होता है
constructors के प्रकार:
parameterized constructors
copy constructors
और default constructors
अब destructors पर जाते हैं
destructors memory memory को deallocate deallocate करने में प्रयोग होते हैं
वे कॉल होते हैं जब एक object ख़त्म होता है
एक destructor कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और न ही कोई return types रखता है
अब constructors and destructors पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने editor पर पहले ही एक code टाइप कर लिया है मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें कि हमारा filename cons hyphen dest dot cpp है
इस program में हम constructors प्रयोग करके दो numbers का एडिशन प्रदर्शित करेंगे
मैं अभी code समझाउंगी
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हमने std namespace प्रयोग किया
फिर हमारे पास addition class है a और b integer variables हैं
ये class addition के प्राइवेट members हैं
यहाँ हमारे पास public specifier है
फिर हमारे पास construtor addition है
constructor का name वही है जो class का है
यहाँ मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स passed किये
अब हमने एक destructor परिभाषित किया
इसके लिए हमने tilde चिन्ह के आगे destructors नेम प्रयोग किया
यह public function add है
यह a और b का sum returns करता है
यहाँ हम scope रेज़ोल्यूशन operator प्रयोग करके constructor access करते हैं
a और b प्राइवेट members हैं
प्राइवेट members को access करने के लिए हम x और y प्रयोग करते हैं
फिर हम destructor access करते हैं
इसमें हम memory deallocation print करते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हम addition class का object obj बनाते हैं
फिर हम दो आर्ग्यूमेंट्स 3 और 4 pass करते हैं
3 x में संचित होगा और 4 y में संचित होगा
इसका मतलब a की value 3 और b की value 4 है
constructor जो आर्ग्यूमेंट्स रखता है parameterized constructor कहलाता है
अतः यह parameterized constructor है
यहाँ हम object obj प्रयोग करके function add कॉल करते हैं
और sum sum print करते हैं
यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए type करें g ++ space cons hyphen dest dot cpp space hyphen o space cons
enter दबाएं
type करें dot slash cons
enter दबाएं
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है
sum is 7 और memory deallocation
अब default constructors पर एक उदाहरण देखते हैं
अपने program पर वापस आते हैं
मैंने पहले ही code टाइप कर लिया है
ध्यान दें हमारा file default dot cpp है
अगर constructor class में घोषित नहीं हुआ है
तो compiler class के लिए एक default constructor लेता है
अब मैं code समझाती हूँ
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हमने std namespace प्रयोग किया
फिर हमारे पास class subtraction है
फिर हमने public में a और b घोषित किया है
यहाँ हमारे पास sub function है
हमने दो आर्ग्यूमेंट्स int a और int b passed किये
यह दो numbers a और b का subtraction returns करता है
यह डिफ़ॉल्ट constructor है
यहाँ हम scope resolution operator प्रयोग करके default constructor को access करते हैं
यह हमारा main function है
इसमें हमने variable x परिभाषित किया
यहाँ हम class subtraction का एक object s बनाते हैं
फिर हम object s प्रयोग करके function sub कॉल करते हैं
और दो आर्ग्यूमेंट्स 8 और 4 pass करते हैं
फिर परिणाम variable x में संचित होता है
और यहाँ हम difference print करते हैं
यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने terminal पर वापस आते हैं
अब compile करते हैं type करें g ++ space default dot cpp space hyphen o space def
enter दबाएं
टाइप करें dot slash def
enter दबाएं
output इस प्रकार रिटर्न होता है
difference is 4
अपने program पर वापस आते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने function में आर्ग्यूमेंट्स passed किये हैं
और हमारे पिछले उदाहरण में हमने object में आर्ग्यूमेंट्स passed किये
और यहाँ objects प्रयोग करके हमने आर्ग्यूमेंट्स passed किये
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
constructors उदाहरण addition
parameterized constructor उदाहरण addition obj 34;
destructors उदाहरण ~ addition
default constructor उदाहरण subtraction
नियत कार्य में division named class बनायें
उस class के लिए constructor बनायें
और एक function divide बनायें जो दो दिए numbers को डिवाइड करे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
online test pass करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contact @spokentutorial org को लिखें